ये घर है इसमें कांच का डोर लगा हुआ है और रेड और व्हाइट से बैलून से सजा हुआ है।

ये एक बाइक शोरूम है इसमे बहोत सारी बाइक खड़ी है रेड कलर की येलो कलर की बाइक हैं और ब्लैक कलर की सीट हैं।